एक पेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है आ बादल भी दिखाई दे रहे है बादल सफ़ेद और आसमानी--

जैसा की देख पा रहे है एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान दो मंजिल की दिखाई दे रही है दुकान मैं गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है चेयर भी दिखाई दे रहें है।

मिलो दिखाई दे रहे है और हर प्रकार के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है रोड दिखाई दे रही है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है पंखे लगे हुए--

जैसा की देख पा रहे है एक मकान बनते हुए दिखाई दे रहा है उस मकान मैं बास के लकड़ी लगी हुई दिखाई दे रहे है।

जैसे की देख पा रहे है एक झाँसी दिखाई दे रही है झांसी जो की फूलो से सजी हुई दिखाई दे रही है मालों से सजी हुए दिखाई दे रही है।

बहोत सारे लड़के लड़को के भी दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है और रोड पर बहोत सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

जैसा की देख पा रहे है एक पूल देखाई दे रहा है।